यहां पे बड़ा सा सीसा लगा हुआ है यहां पे सीढ़ियां भी लगी हुई है यहां पे एक दुकान है जो की शटर बंद है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे भीं लगे हुए हैं यहां पर यहां पर बहुत सारे रंग बिरंगी कारीगर की गई हुई --

ऊपर जा रहे है यहा पे घासे भी उग रही है और पहाड़ से पानी निकल रहा है।

यहां पे मीटर लगा हुआ है।

यहां पे घर बना हुआ उसपे टीन डली हुई हैं यहां पे खाली जगह हैं यहां पे कूड़ा पड़ा हुआ हैं यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे--

यहां पे एक काले कलर की बाल्टी रखी हुई है।

फोन रखा हुआ है। यहां पे एक लैपटॉप रखा हुआ है यहां पे पानी की बॉटल भी रखी हुई है।

यहां पे चार लड़के बैठकर बात कर रहे हैं कि सामने एक लड़का प्रोजेक्ट --

एक ए_टी_एम मशीन है जिससे पैसे निकाल--

पुरा ढाला हुआ है सामने दरवाजा लगा हुआ है जोकि सफेद कलर की यहां पे कैंडल भी लगे हुए हैं।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

यहां पे सीढ़ियां भी लगी हुई हैं यहां पे घर भी बने हुए हैं यहां पे सामने एक बहुत बड़ा घर बना हुआ है।

यहाँ पे काँच की टेबल हैं।

टेबल पर पानी की बोतले रखी हुई है।

यहां पे बहोत सारी लाइटें लगी हुई है।

यहां पे लाइटे भी जल रही है यहां पे बहोत सारे पेपर रखे हुए हैं।

यहां पर एक मंदिर बना हुआ है इस पर लाल कलर से पेंट किया गया है यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहां पे लोहे का--

शर्ट पहनी हुई है यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए है और दीवारों पर घासें उग रही है।

यहां पे ईटा रखा हुआ काले कलर का जो कि बहुत बड़ा है।

अ पेड़ पौधे उग रहे हैं यहां पे बहोत सारे सुखे--

यहाँ पर एक ट्रेनिगर है जिसका नाम है

यहां एक होटल की तस्वीर है जिसका नाम है होटल गेट बाय कर्नाटका।